अंदर काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है। काफी सारे लोग प्रैक्टिस करते नजर आए कुछ लोग दोड़ते नजर आ रहे है। यहां पे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

नजर आ रही है। शॉप के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पर दा अर्बन डेली लिखा हुआ है। यहाँ पर एक ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफी सारी बाइक दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पे मशीन अलग-अलग प्रकार की नजर आ रही मशीन काफी बड़ी दिखाई दे रही है। मशीन का कलर काला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफी सारी लाइट दिखाई दे रहे है। यहाँ पे कुछ गेट नजर --

नजर आ रहा है स्टॉल काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टॉल के ऊपर पिंकू बनारस लिखा हुआ है सामने काफी सारा सामान दिखाई दे रहा है। यहाँं पर कुछ चेयर दिखाई दे रही हैं। यहाँं पर एक पानी की टंकी नजर आ रही है।

पीछे एक पेड़ नजर आ रहा है। पेड़ काफी बडा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर खाने पीने का सामान नजर आ रहा है। यहाँ पर एक हरा डब्बा दिखाई दे रहा है। पीछे खंभा नजर आ रहा है।

मशीन का कलर काला दिखाई दे रहा है। यह हर प्रकार की मशीन दिखाई दे रही है। नीचे प्ले प्लेट रखी हुई है। प्लेट अलग-अलग फाइल्स की रखी हुई है। यहाँ पे काफी सारी सफाई दिख रही हैं।

दिखाई दे रहा है मंदिर को काफी अच्छे से डिज़ाईन किया गया है मंदिर काफी बड़ा दिखाई दे रहा है सामने कुछ गेट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे काफी अच्छा डेकोरैशन नज़र आ रहा है।

यहाँं पे काफी सारे सेल बने हुए है। सेल पर काफी सारी दवाइयाँ रखी हुई है। यहाँं पर कुछ सिरप दिखाई दे रही है। यहाँं पर काफी सारी दवाइयाँ नजर आ रही यहाँं कुछ चीज टंगी हुई दिखाई दे रही --

यहाँं पर कुछ बात नजर आ रहा है। यहाँ पर काफी बाल दिखाई दे रही है। यहाँं पे काफी सर जिम का समान नजर आ रहा है। यहाँं पे काफी सारा समान रखा हुआ है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है।

शोरूम दिखाई दे रहा है। शोरूम पर लाल बोर्ड लगा हुआ हैं। बोर्ड पर होंडा लिखा हुआ है। यहाँं पर कुछ गाड़ियां नजर आ रही है। एक गाड़ी काले कलर कि दिखाई दे रही है।

बलूंस का कलर ब्लू और व्हाइट दिखाई दे रहा है ऊपर काफी सारी लाइट दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ पर्दे नजर आ रहे हैं।

मंदिर नजर आ रहा है। मंदिर काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। मंदिर के ऊपर एक घंटा नजर आ रहा है। मंदिर के ऊपर एक मूर्ति दिखाई दे रही है। अ बाजू में एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

दिखाई दे रही है। शॉप के बाहर एक बोर्ड लगा है। बोर्ड पर दिना चाट भंडार लिखा हुआ है। यहाँं पर काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है यहाँं पर काफी भीड़ लगी हुई है यहाँं पर काफी सारी लाइट दिखाई दे रही हैं।